ढेर सारा पानी का टंकर है भोज वोज का खाना बन रहा होगा।

फर्श है बहुत बड़ा सा ग्राउंड है मिट्टी का है घास फूस है।

उसके दोकान है चार पैर है जो भूरा कलर का है।

आदमी लोग ढेर सारी लड़की लड़का कोई सेल्फी ले रहा है कोई बच्चा लोग एक दूसरे में बात कर रहा है।

ऑरेंज कलर का मिलर है वाइट कलर का--

एक टकला लड़का मास्क पहना हुआ है एक हा--

एक भैया खड़े हो के देख रहे हैं उधर ही।